इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है।

मिट्टी का रंग हल्का हल्का लाल है।

सामने की ओर एक आदमी और एक महिला है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा फील्ड है।

पीछे कई सारे बड़े छोटे हरे रंग के पेड़ है।

नीचे प्लास्टिक के तगाड़ी है पीछे बड़े बड़े बल्टियां है।